फूलों की माला टंगी हुई है और पीछे में बैग रखा हुआ है एक कारपेट बिछा हुआ है।

यहां एक रोड जा रही है जहां पर बहुत सारे घर दिख रहा है बिजली की तारे लगी हुई है।

यहां हरे-हरे घांस उगे हुए हैं| ऊपर में टंकिया लगी हुई है| सीढियाँ लगी हुई है लाइटे लगी--

लाईटे लगे हुए हैं बिजली के तारे लगे हुए हैं बगल में बोर्ड लगे हुए हैं बोर्ड थोड़े फटे हुए भी हैं पेड़ पे पत्ते हरे हरे पत्ते--